सब कोई मास्क लगाए हुआ है और यह बहुत बड़ा फैक्ट्री है अगल बगल बहुत सारे लाइट ऊपर में रॉड यह सब है।

यहां पर पेट्रोल वगैरा मिलता है जब बहुत सारी अलग अलग कलर की लाइट लगा हुआ है जैसे की ब्लू रेड पिंक ग्रीन येलो इस टाइप--

बहुत सारे कपड़े हैं जो कि सब बंद है और इसमें कुत्ता का पिक्चर है जोकि ब्राऊन कलर का है।

ये बहुत अलग अलग कलर के बेल्ट हैं जैसे की ब्लू बैगनी कलर ब्लैक ऑरेंज येलो ।

और एक सिलाई मशीन है जिसका कलर वाइट कलर का और उसके बिगल में एक और सिलाई मशीन है जो कि व्हाइट ही कलर का है।

छोटा छोटा कटिंग कटिंग करके जो घर के कामों के लिए यूस होता है गम रखा हुआ है।

में छोरा छोरा थोड़ा थोड़ा है सब रखा हुआ है और पूरा बहुत लाइट जल रहा है।

इस दृश्य में जैसा की नजर आ रहा है कि एक इंसान खड़ा है जो की ब्लैक कलर का जैकेट पहना हुआ है और वाइट कलर का मास्क लगाया हुआ है।

यहां पे बहुत सारा पत्थर रखा हुआ है।

इधर बहुत सारी गाड़ियां है जैसे कि होंडा शाइन इस्कूटी हीरो होंडा इस टाइप की गाड़ियां।

कैमरा मैन जो है की फोटो क्लिक कर रहा है कैमरा मैन बैठ के फोटो क्लिक कर रहा है और ऊपर फ्लैश जला दिया है।

इसमें बहुत सारे लोग जिम करते हुए भी नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि बहोत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं।

उसके उसके जस्ट नीचे ब्लू कलर के प्लास्टिक में कुछ रखा हुआ है।

बूढ़ा है और एक कोई लेडिस है।

इसके पीछे बहुत सारे चेयर लगाए हुए हैं जैसे की कोई शादी हो रहा हो।

एक इंसान जो पत्थर पे बैठा हुआ है और तीन लोग हैं जो नदी के अंदर पार करने का कोशिश कर रहे।

बहुत बड़ा सा झील है।

दृश्य में नजर आ रहा है जैसे की बहोत सारे कार्टून में चप्पल और जूता रखा हुआ होगा उसके ऊपर एक फैन है बल्ब है बगल में एक स्विच बटन है।

बगल में एक वाइट कलर का सोफा लगा हुआ है जिसके सामने डेस्क रखा हुआ है।

यह एक पुल का दृश्य है जिसके अगल बगल पानी है जो कि बहुत दूर में फैला हुआ है।

जैसा कि इस दृश्य में नजर आ रहा है कि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो की खड़े है।

बहोत लोगों ने जैकेट पहना है और बहुत लोग बस शर्ट में भी है बहोत लोगों ने जैकेट पहना है जोकि बहोत ही अलग-अलग कलर का है किसी का लाल है किसी का ब्लू है।

किसी का डार्क ब्लू है एक व्यक्ति है जो की शर्ट और ऊपर से कोट पहना हुआ--

और उसके बगल में जो तार गई है वह नजर आ--

आस पास ठेला है जिसमें कुछ फल फ्रूट बिक रहे हैं जैसे ये केला है ये सब।